यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है। पार्क में हरी-हरी हरियाली दिखाई दे रही है। सामने एक तरफ एक कुर्सी रखी हुई है जिस पर अलग-अलग रंग की पड़ी हुई है। पीछे देखने पर पेड़ दिखाई दे रहा है। लाइट जल रही है।

ये एक मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में एरो के गुट्ट बने हुए हैं सफेद आकृति जैसे कुछ बना हुआ है पीछे कुछ दो-तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है। दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। दुकान दिखाई दे रही है। दुकान के आगे एक रस्सी बंधी हुई है जिस पे किताबें लगी हुई हैं। किताबों के ऊपर क्लिप लगि हुई हैं। क्लिप पीले --

रेलिंग दिखाई दे रही है। रेलिंग के थ्रू पीछे सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है। बराबर में दुकान दिखाई दे रही है जिसका पण जन शटर लगा हुआ है।

ऊपर का छत का किनारा दिख रहा है नीचे एक बोर्ड लग रहा है जो कि नीले रंग का है इसमें सफेद रंग से और पीले रंग से कुछ लिख हुआ है।

एक किला दिखाई दे रहा है। जो कि ईटों का बना हुआ है। नीचे फर्श दिखाई दे रहा है जिस पर हरी-हरी घांस दिखाई दे रही है। ईटों के कुंभ गुट बने हुए हैं जिस पर ईंट से बना हुआ है।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

बराबर में एक डेस्क रखी है जिसपे कुछ बोतलें रखी हैं। बराबर में स्पेस दिखाई दे रहा है जोकि सफ़ेद रंग का है। पीछे की दीवार दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ रेकेँ रखी हैं। रेक पर कुछ सामान रखा हुआ है। दीवार पर कुछ आकृतियां बन रही हैं।

आ-आ शरीर पर एक लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ है जोकि एक पथर के गुंबद पर खड़े हुए हैं ये गुंबद एक --

यह एक नुमाइश का दृश्य है | यहाँ पर एक नीचे खेत नीचे जगह दिखाई दे रही है यहां पे हरी-हरी घास उगी हुई है यहाँ पे झूले लगे हैं | यहाँ --

पर एक दीवार दिखाई दे रही है। जो कि लाल रंग की है। यहाँ पर प्रतिमा बनी है यह प्रतिमा --

मुँह दिखाई दे रहा है। ऊपर एक पत्थर बना हुआ है पत्थर पे एक और --

फर्श दिखाई दे रहा है जो कि मार्बल का बना हुआ है ऊपर एक आकृति द्वार दिखाए दे रहा है जिस पे आकृति बनी हुई है।

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि नीले रंग का है। उसपे कुछ लिखा हुआ है। ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। पीछे तारों का झुण्ड फैला हुआ है। बराबर में एक साइकिल खड़ी हुई है। जिस पर कुछ रखा हुआ है।

सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर कार जाते दिखाई दे रही है। कार सफ़ेद रंग की जा रही है। ऑटो भी दिखाई दे रहा है। ऊपर पूल दिखाई दे रहा है। पूल के नीचे एक दिवार दिखाई दे रही है जोकि सफ़ेद रंग की है।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

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है। जहां पर लाल रंग की दीवार दिखाई दे रही है। पीछे नीले रंग की दीवार है। जिसपे पोस्टर लगा हुआ है जिसपे आकृति बनी है जिस पर दो गुब्बारे लगे हुए हैं जो कि सफ़ेद रंग के हैं। पीछे कोने पे एक फ्रिज दिखाई दे रहा है जो कि लाल रंग का है।